यह तस्वीर द सिटी सिटी कैफे की दुकान की दिखाई दी है।

इसके नीचे योर ग्रब हब लिखा है।

और पासीघाट के दोनों तरफ हरे रंग के पत्ते भी बने हुए है।

टमाटर गाजर बैंगन नींबू धनिया और केले स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं जिनमें से एक पेड़ बहुत ही विशालमय है और उसके नीचे एक लाल रंग का घर दिख रहा है।

एक सब्जियां जोखने के लिए जरा तराजू भी है।

यह तस्वीर एक छोटे से मंदिर या धार्मिक सन संरचना की लग रही है जो निर्माणाधीन स्थिति में है।

यह तस्वीर एक छोटी दुकान की है जो स्टेशनरी या किताबों की दुकान लग रही है।

ओर फर्श सफेद टाइलों का--

एक मेज और कुछ कुर्सियां कमरे में रखी हुई है।

दीवारों पर कुछ बर्तन और अन्य सामान टंगे हुए--

यह तस्वीर एक पशु चिकित्सा सर्जरी की है।